यहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं दुआ मांगते हैं इबादत करते हैं।

ये एक बाल विकास स्टोर है यहां पर बहोत सारी--

पार्टी हॉल इंडियन चाइनीस तंदूरी थाली इन बिरयानी का पीछे भी एक पंजाबी खाना दरबार लिखा हुआ हैं।

चार पांच कुर्सी के रखी हुईं हैं एक छतरी लगी हुईं हैं आसमान बिल्कुल साफ हैं।

ये एक स्टेज सा लग रहा है इसके पीछे टीचर डे का सजावट की गई है।

आसमान बिलकुल साफ एंड सफेद रहा है सुबह का वक्त लग रहा है देखने से।--

और फब्बारा सा लगा है एक बिल्डिंग के सामने आजू बाजू बहोत सारे पेड़ हैं।

रात का समय है धीरे धीरे रात हो रही है आसमान कलर का काला लग रहा है खूब सारी लाइटें जल रही हैं आजू बाजू।

छोटा सा दिया जल रहा है आ सामने उसके आदमी खड़ा है आजू बाजू में कुछ बच्चे हैं।

एक आदमी ब्लैक शर्ट कपड़ों में आदमी खड़ा है साइड में पीले कलर के आदमी--

रंग बिरंगी लाइटे है और आतिशबाजी भी हो रही है बहोत सारे लोग खड़े हैं।

ये एक बहोत बड़ा मैदान है एक बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की बिल्डिंग लग रही है साइड में एक पेड़ लग रहा है।

कुर्सियों पर कुछ कुर्सी खाली हैं बाकी सब कुर्सियों पे भरे हुए लोग पास बैठे हुए हैं पीछे कुछ पेड़ हैं।

ये किसी तरह की बैंक लग रही है बादल हल्का आसमान दिखाई दे रहा है सड़क पे कुछ सूखे पत्तियां बिखरी हुई है।

शायद स्कूल सुबह का टाइम तो बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे हैं कुछ टीचर्स खड़े हैं हो सकता है पेरेंट्स भी हो बच्चों की छूटी हो रही हो।

जिम जो अभी न्यू न्यू ओपन हुआ है खूब सारे लोग हैं बलून से सजावट की गई है।

उल्टी टी_वी लगी है दिखाई दे रही है दरवाजा बंद है कितने कलर का है दीवारें पिंक कलर की पेंटिंग एक कुर्सी है उसे पर कोई बैग वगैरा रखा हुआ है।